यहाँ के आस पास जितने भी होटल हैं वो शानदार होटल हैं।

पोस्टमैन से। यहाँ के आस पास के जितने गाँव हैं सब कर --

ये हमारे मार्केट के बीच में यह --

काफी थ्री डी क्वालिटी में एक इमेज दिया गया है।

इसमें काफी लग्जरेबल दिख रहे हैं। वो काफी ब्यूटीफुल एवं दिख रहे हैं।

और टाइम भी पहुँचती भी है।